इस चित्र में हमें सड़क पर एक कार नजर आ रही है जोकि सफेद रंग की है और उस--

जो कि यहाँ रास्ते की पूरी शोभा बढ़ा रहे हैं और बहोत --

क पुल एक पुल के किनारे यहां पर एक युवक को--

जो कि लिखा है आस्था हॉस्पिटल --

यानी यहाँ पर ये आस्था हॉस्पिटल नाम से ये जगह है जहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता है।

इसमें कहीं कहीं हमें पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं जो कि पहाड़ के हिस्से हैं।

हम यहाँ पर एक फैक्ट्री का सीन देख रहे हैं जहाँ पर हमें--

हम यहाँ पर सड़क देख रहे हैं और--

सड़क बहोत ही चौड़ी है सड़क पर कोई भी--

बाहर नहीं नजर आ रहा है सड़ एकदम सड़क एकदम से खाली दिखाई दे रही है।

और यहाँ पर गाड़ियों की भीड़ भी--

बगीचे में पानी डालते हुए एक छोटी बच्ची दिख रही है जो कि पाइप से पानी पेड़ पौधों पर यहाँ पर पाइप से--

इस चित्र में हम एक वाटर पार्क की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर बच्चों को--

बहोत ही अलग अलग तरह के झूले मिल जाते हैं।

हमें यहाँ पर बहोत सारी लड़कियां और महिलाएं यहाँ पर नृत्य की मुद्रा में--

पोशाके भी एक जैसी हैं जिनमें इन्होंने साड़ी पहन रखी है जो कि लाल और गहरे नीले रंग--